बडे हुए है जो दिखने में क्या शानदार नज़र आ रहे हैं ।

यह एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें कई सारे टाइल्स बिछे हुए हैं ।

बड़े-बड़े पहाड़ छोटे -छोटे पहाड़ जैसॆ --

अउ हनुमान भगवान एक ठो गधा भी पकड़े हुए हैं ।